में पार्क दिखाई दे रहा है वो ग्रीन ग्रीन पार्क है उसमें एक बंदा--

के नीचे लव लिखा हुआ है नीचे दो बंदे बैठे हुए हैं टेबल पे कुछ--

ही करके उंगली दिखा रही है और ब्लैक कलर का उन उनका मोबाइल है। वो बहोत सुंदर लग रही है। दोनों ने बाल खुले कर रखे हैं।

बोर्ड पर और जे_एम_डी भी लिखा हुआ है बोर्ड पर और --

और यहाँ उसके रेड कलर के शर्ट पहन र--

हम देख रहे हैं कि एक घर है और घर के सामने ये एक पार्क है।

यहां हमें एक सोफा दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का बना है उसमें कारीगरी बहुत अच्छी करी हुई है तो--